टीचर देख रही है एक टीचर खड़ी है बच्चे क्राफ्ट का कुछ बना रहे है।

उसके बाजू में एक घर है।

एक महिला व्हाइट कलर के कपड़े में खड़ी हुई है बेंच पर फेविकॉल कैची टेप कागज पेपर बोर्ड --

बच्ची की हात मे फेवकॉल है वो कागज चिपका र-रही है। एक औरत खड़ी हुई है।